हो जाएगा यह बहुत उपयोगी है।

यह एक ग्राउंड सा प्रतीत होता है।

हरा भरा मौसम है। पहाड़ भी दिख रहा है।

कई सारे पेड़ पौधे दिख रहे है और पहाड़ भी दिख रहा है।

यह गोल्डन पगोड़ा नो चेनम नाम का कोई जगह है।

यहां बौद्ध भगवान का फोटो सब भी रखा हुआ है।

और शायद से ये कोई एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है।

बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है।

एक इंसान गेट के आगे खड़ा है।

हरी कलर की कारपेट बिछाई गई है।

खुले आसमान में और बादल के साथ यह दृश्य बहोत ही शोभा जनक है।

पीछे पहाड़ है और आसमान में बादल घेरा हुआ है।

आगे वाले इंसान के सामने कंप्यूटर है जिसमें वो कुछ काम कर रहा था।

दिख रही है नदी का पानी बहोत ज्यादा ही साफ है।

ऊपर रेलिंग्स दिख रही है शायद वहां पे कुछ हो सकता है।

पीछे में चट्टान भी दिख रही है।